हमारे सामने एक बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसका नाम कंपनी आउटलेट है यह उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे एक पटना जिम है।

ये कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

ये बिल्डिंग के बगल में एक और बिल्डिंग है जिसमें निर्माण कार्य--

पर्दे के बाहर से कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं कमरे में एक पंखा भी चल रहा है।

यह एक बहुत बड़ी मछली है।

और उसके बगल में एक शीशा है।

तस्वीर में एक छत दिख रहा है छत पे कुछ ईंटें रखी हुई हैं।

तीन व्यक्ति भी छत पर है।

छत पर कुछ पटरे भी हैं।

इस तस्वीर में बहुत--

किसी वाटर पार्क की है।

यह एक किला है किले के बाहर--

दीवाल के --

और एक खिड़की भी दिख रहा है।

तस्वीर में एक कमरे में--

इस तस्वीर में एक काले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति दिख रहा है उसके सामने शीशे में कुछ दो व्यक्ति दिख रहे हैं सीसे के ऊपर --

यह तस्वीर रात के समय का है किसी बगी--

उसके बगल में एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

सामने एक व्यक्ति दिख--

कुर्सियां भी है कुछ--

इस तस्वीर में बहुत सारे--

और संतरे रंग का है एक व्यक्ति भी--

कुछ घर दिख रहे हैं जिसमें एक--

बाहर में बहुत लोग खड़े हैं।

इस तस्वीर में तीन लोग दिख रहे हैं।

खड़ा हुआ है।

कुछ जमीन भी नजर आ रही है।

नदी में एक नाव भी लगा हुआ है।

एक पिज़्ज़ा का बोर्ड भी दिख रहा है।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

एक तस्वीर में बहुत सारी--

इसके अगल-बगल में बहुत सारी बिल्डिंग हैं।

सामने में एक कुर्सी भी दिख रहा है।

कई पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा भी है।

यह तस्वीर किसी कमरे की है।

जिसमें एक कुर्सी एक टेबल --

यह तस्वीर किसी क्लासरूम की है।

एक वाइट बोर्ड और एक ब्लैक बोर्ड --

एक खिड़की भी दिख रही है।

पुत्र विश्वविद्यालय पटना और उसके नीचे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना लिखा हुआ है।

जिनके सामने एक सोफा रखा हुआ है।

कपड़े भी दिख रहे है।

एक साइकिल दिख रहा है।

और दो मोटरसाइकिल भी दिख रहा है।

नजर आ रही है।

यह तस्वीर किसी गार्डन का है।

जिसमें --

उसके बगल में एक--

चक्का दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी कमरे की है कमरे में सफेद रंग का पेंट किया हुआ है।

बिल्डिंग में सबसे ऊपर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ पेड़ नजर आ रही है एक--

पोल भी दिख रहा है उसके पीछे एक बिल्डिंग भी है।

यह तस्वीर किसी जिम का लग रहा---

पूजा का स्थान बनाया हुआ है खिड़कियों के बाहर से--

दो व्यक्ति नजर आ रहे है।

दीवाल पे घड़ी लगा हुआ है।